दूर में एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

तथा बेंच के ऊपर बहुत सारे कॉपी पेंसिल सामान रखे गए हैं।

एवं एक कार भी दिखाई दे रहा है जो कि ब्लैक कलर का है।

एवं यहां पर लोहे का गेट भी है।

बहोत सारे आदमी हाथ को जोड़े हुए हैं।

गमले में बहोत सारे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं एवं होटल के अंदर कांच की मदद से गेट को बनाया गया है।

गेट भी दिखाई दे रहा है जिसका कलर बुलु है।

अलमारी का कलर हरा है।

एवं यहां पर बहुत सारे लेडीज भी दिख रही है।

यहां पर एक आदमी जो दिखाई दे रहा है वो खड़ा है।

अलमारी के ऊपर बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

एवं एक महिला जा रही है तथा यहां पर बहुत सारे जेंस भी आए हुए हैं।

यहां पर एक आदमी का टीशर्ट का कलर व्हाइट एवं पैंट का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है।

उसपर बहोत सारे पोस्टर लगाए हुए हैं।